जब वह इस स्कूल मे होता है। बोहोत ही खुश होते हैं बच्चे जब भाग लेते हैं। उनको जिस चीज मे इच्छा होता है।

बच्चों के लिए जैसे योगा जरूरी होता है वैसे कर्राटा भी सेफ़्टी के लिए जरूरी होता है वो खास करके लड़कियों के लिए।

दोनों दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर ये बनाया जाता है बहुत ही मजबूती होता है।

ये सीन आपको शहरो मे देखा जाता है जो पूल के नीचे ये चोक चोरहा होता है जहां पे लोग रुकते है टेंपू के लिए बस के लिए या काही जाने के लिए होता है तो वहां पे वो रुकते है।

ऐसा पिक्चर आपको मॉल में देखने को मिलता है जहाँ पे सब्जी को ढंग से रखा जाता है।

और युवा लेकिन जबरदस्ती यहाँ जाते हैं अपने लुक चेंज करवाते हैं अपने लवर के लिए।